यह इमेज एक बुद्धिस्ट मंदिर की है।

लेक के किनारे एक बोट खड़ी हुई है।

बोट किनारे पर रस्सियों से बंधी है।

यह इमेज एक क्लासरूम की है।

दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड व एक व्हाइट बोर्ड है।

दीवार पर एक ब्राउन रंग की खिड़की है।

आदमी के पीछे एक लाल रंग का टेबल है।

कमरे की दीवारों का रंग क्रीम व्हाईट है।

यह इमेज एक खाली प्लॉट की है।

दोनों के हाथ में माइक है व वे कुछ पढ़ रहे हैं।

तेज के पीछे एक ऐ_सी वह स्टेज के आगे एक हरे रंग का कारपेट है।

बिल्डिंग की दीवारों पर लोगों ने सफेद रंग से कुछ लिखा है।

इमेज में कई बड़े बड़े पत्थर व चट्टानें दिखाई दे रही है।

यह बिल्डिंग एक पुलिस स्टेशन की लग रही है।

बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं।

इस इमेज में एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक होटल या रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

लड़के के पीछे एक बड़ा फाउंटेन है।

कैफे के बाहर एक साइकल खड़ी है।

काउंटर पर दो आदमी खड़े हैं।

यह इमेज एक पार्क की है।

यह इमेज एक बुद्धिस्ट मंदिर की है।

यह इमेज एक बिजी चौक की है।